और भी आदमी हमें दिखाई दे रहे हैं मजदूर हैं ईंटें जमी हुई हैं ।

एक चादर भी हमें लगी हुई नजर आ रही है चादर का गेट --

हमें बड़ा सब घर दिखाई दे रहा है उसमें ऊपर हमें एक छोटी सी छत--

और कांच की खिड़की हमें लगी हुई नजर आ रही है।

हमें दिखाई दे रहा है एक आदमी बैठा हुआ है वहां पेड़ों के पास--

बड़े बड़े दो कांच भी हमें लगे हुए नजर आ रहे हैं।

और बाट तराजू रखा हुआ और एक आदमी हमें अ जो दिखाई नही दे रहा है बस आधा दिख रहा है।

और हमें अ डेकोरेशन दिखाई दे रहा है फ्लावर्स से डेकोरेट है ये--

एक हाथ दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में हमें चम्मच स्टील का दिखाई दे रहा है और थोड़ी सी खिड़की नजर आ रही है।

बना हुआ हमें नजर आ रहा है अ कमरा सा और हमें दिखाई दे रहा है बोर्ड लगा हुआ है इसके बाहर एक--

और न्यू मैन वेडिंग भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बोर्ड पर--

लोग हमें खड़े और बैठे हुए नजर आ रहे हैं ।

बिजली के तार और नीला आसमान हमें ऊपर दिखाई दे रहा है।

हमें दिखाई दे रहे हैं अ खिड़की भी बनी हुई है गेट के पास--

हमें यह स्कूल के अंदर का दृश्य दिखाई दे रहा है क्लासरूम का जिसमें यह बच्चियां हैं ।

मस्जिद हमें दिखाई दे रही है मस्जिद की खिड़कियां नीले रंग की और हमें--

पेड़ हरे-हरे लगे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं।

हिराना में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है एक सफेद और--

और डिजाइन भी हमें छत में बना हुआ नजर आ रहा है।

और हमें दिखाई दे रहे हैं एक आदमी बैठा हुआ है सफेद पगड़ी बाने सफेद कपड़े पहने हुए।

पानी की टंकी ऊपर हमें दिखाई दे रही है रखी सफेद रंग की पेड़ लगे हुए हैं हरे-हरे सफेद आसमान ऊपर--

हरे हरे पेड़ पौधे और कुछ लाल पत्ते भी हैं वहां निशा ढाबा हमें लिखा दिखाई दे रहा है।

एक जगह डायरियां और बैग रखा हुआ नजर आ रहा हमें--

हमें दिखाई दे रहा है बीच में गड्ढा सा है बड़ा मिट्टी पड़ी हुई है।

और हमें एक मस्जिद नजर आ रही है सफेद और हरे रंग की--

हरे-हरे पेड़ आसपास लगे हैं एक मकान भी हमें बना नजर आ रहा है।

पीछे सैनिक का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है और सैनिक साइकिल मार्ट --

और हमें ये स्टेडियम की सीढ़ियां सामने बनी और बड़ा सा स्टेडियम दिखाई दे रहा है।

और मकान भी बने हमें नजर आ रहे हैं दूर हमें सफेद आसमान नजर आ रहा है.

जिस पर हमें अ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और लाइफ केयर हॉस्पिटल का बोर्ड हमें पीला दिखाई दे रहा है लगा हुआ--

हरी हरी घास हमें लगी हुई दिखाई दे रही है और उसे पर आदमी बैठे हुए हैं।

जहां पर हमें भीड़-भाड़ ये नजर आ रही है।

तार हमें बिजली के नजर आ रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक लिखा है एक बिल्डिंग पर--

अ बहुत सारा सामान और एक महिला और एक आदमी अंदर दिखाई दे रहे हैं।

रखी हुई डस्टबिन रखा हुआ है ग्रीन रंग का कुर्सियां रखी हैं।